एक लंबा खंबा दिखाई दे रहा है एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है. एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।